यह एक शोरूम है जो की बहुत प्यारा शोरूम है और यहा पे बहुत सारी गाड़िया खड़ी है यहा पे एक ड्यूक गाड़ी भी है और यहा पे बहुत सा--

यह बहुत छोटा सा शोरूम है लेकिन बहुत प्यारा है यह हीरो का शोरूम है यहा पे जस्ट शोरूम के सामने ही एक अशोक का पेड़ है और उसके राइट साइड बहुत सारी गाड़िया खड़ी है जो की रेड कलर में व्हाइट कलर में ब्लॅक कलर में है।

अ अंदर लाइट्स लगी हुई है। अंदर डेकोरेट किया गया है और बाहर बॅनर पे भी डेकोरेट किया गया --

प्रकल्प लिखा हुआ है यहाँ पे मैप का भी डिज़ाइन बना हुआ है और एक गाड़ी है और आसपास बहुत सारे पौधे है और एक-दो खम्बे भी--

ग्राउंड जो है उसपे छोटे-छोटे घास भी लगे हुए है और यहा पे बहुत प्यारा विव दिख रहा है शाम का टाइम है खुला आसमान दिख रहा है।